ये एक बहुत बड़ा ढाबा दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे कांच के शीशे लगे हुए हैं।

बहुत सारे गमले रखे हुए है बाइक खड़ी हुई है ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा--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

शीशे के ऊपर एक मक्की बैठी हुई है बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं एक बाई बलफ की रोशनी दिखाई दे रही है।

कुर्सी रखी हुई है माइक के स्टैंड रखे हुए हैं माइक लगा हुआ है लकड़ी की एक मेज रखी हुई है।

लाइट का खंबा है लाइट के तार दिखाई दे रहे हैं पीछे कुछ--

नीचे कुछ सामान पड़ा हुआ है पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं एक घर दिखाई दे रहा है।

त पड़े हुए हैं रेतीली मिट्टी है एक आदमी खड़ा हुआ है आदमी के पीछे--